यहां पर सभी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं।

यहां एक घर भी है घर के साइड में बहुत सारे पेड़ हैं।

और यहां पर ऑनलाइन फ्रॉम आधार कार्ड पैन कार्ड जेरॉक्स मोबाइल चार्जर कवर बैटरी हेडफोन फोटो रिचार्ज कवर सब मिलते हैं।

और रूम में एक चप्पल है और एक कि डोर है जिसका कलर ब्लैक में है।

बिल्डिंग के बाहर फूल के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं।

टेलर्स दुकान को ऑरेंज फूल से सजाया है।

यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बकरी है।

बकरों का रंग व्हाइट है और ब्राउन है।

पीछे बहुत सारे पेड़ है।

एक ऑटो है एक रिक्शा है और एक बाइक है।

मंदिर के साइड में एक पंडाल बना हुआ है जिसमें बोर्ड में हाजीपुर लिखा हुआ है।

बाइक के सामने बहुत सारे लकड़ी रखे हुए हैं।

बिल्डिंग का गेट ब्लैक कलर का है और बिल्डिंग का कलर व्हाइट में है।

एक बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगाया हुआ है।

और माथे पर एक मोर पँख भी है जिसके बीच में ब्लू कलर का भी पेंट किया हुआ है।

यह एक ड्रेसिंग का दुकान है जिसमें चार ड्रेसिंग रखे हुए हैं।

उसने पिंक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है उसके बगल में एक फोटो एक कलेंडर टंगा हुआ है।

और एक आदमी टोपी पहना हुआ चल रहा है।

पानी के साइड में पेड़ भी है।

और एक लड़का ने रेड कलर का सर्ट और रेड कलर का टोपी पहना हुआ है।

और एक लड़का ब्लैक कलर का टीशर्ट पहना हुआ है।

दो ए_सी लगे हुए हैं।